और जस्ट पीछे एक कैमरा लगा हुआ हैं और सामने से कैमरे की विडियो बन रही हैं। वो सिंगिग --

ऐट थ्री फोर जीरो टू फाइव सिक्स सेवेन थ्री फोर --

इस पिक्चर में एक पार्क दिख रहा है जहाँ पर हरी कलर की --

एक झांकी लगी हुई है दुर्गा जी की और यहाँ पे कुछ पंडित लोग बेठे हुए हैं।

येल्लो कलर पैंट पहने हुए हैं। पर्पल कलर की पंची रूम हैं। यहाँ --

इस पिक्चर में एक पार्क सा दिख रहा है जहाँ पर --

और नीचे एक सोफा रखा हुआ है और पास में जस्ट पास में एक गेट लगा हुआ है।

जहाँ पर व्हाइट और का ब्लू कलर का उसपे पेंट सा पुता हुआ है।

और ऑरेंज कलर की वो सी बनी हैं वाइट कलर की और स्काइ ब्लू कलर की।

इस पिक्चर में एक अ --

और एक गेट लगा हुआ है ब्लैक कलर का वाइट कलर की लाइट जल रही है और यहाँ स्टेप्स सिखाये जा --

और सॉक्स भी रखे हुए हैं। जॉकेट टीशर्ट रखी हुई हैं।